इस तस्वीर में मुझे एक रोड नजर आ रहा है रोड पे एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

और स्टील के बाहर एक काले रंग का कुछ नजर आ रहा है एक लकड़ी का टेबल दिखाई दे रहा है।

और एक दरवाजा दिखाई दे रहा है ऊपर में लगे दो पंखे नजर आ रहे--

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान नजर आ रही है जो चप्पल के दुकान नजर आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें बहोत सारी मछलियां नजर आ रही है और कुछ लोग उसे काटते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे न मछली की दुकान दिखाई दे रही है इसमें बहोत सारी मछलियां रखी हुई है कुछ मछलियां लंबी लंबी नजर आ रही हैं।

मंदिर बहोत ही सुंदर लग रहा है फूलों से सजाया हुआ नजर आ रहा है अच्छा लग रहा है।